ये जो है बड़े वाला गेट लगा हुआ है और उसके साइड में हमारे पास है वाशरूम ।

ये जो पिक है ये है एक रोड की यहाँ पे ना तीन गोट बैठी हुई है जिसे हम बकरी कहते हैं यहाँ पे --

ये लोग बहुत ज्यादा खड़े हैं यहां पे बहुत ज्यादा साइकिल खड़ी है यहां पे मोस्टली जो है।

यह जो पिक है किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह की रखी हुई है है यहां पे बैठने के लिए बहुत सारी कुर्सियां रखी है।

ऐ और जो थीम है यहां की यहां की येलो एंड व्हाइट जो पैरोट कलर होता है और सामने के तरफ ब्लू ।

है और यहां पे टॉर्चेज भी रखी हुई है बहोत सारी अलग अलग कैलकुलेटर वगैरा भी--

और ऊपर जो है एच_डी_एफ_सी की ब्रांच और आईसीआईसी बैंक मतलब कि इन दोनों बैंकों की एच_डी_एफ_सी और आईसीआईसी की ये ब्रांच भी है और नीचे पैन --

है और ये वाइट कलर के बस है पीछे बहुत सारी दुकानें भी है एक कार भी है और यहाँ पे एक बोर्ड है जिस पे शिशु रक्षा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे एक चौक टाइप का सर्कल बना हुआ है।

इनके और वो जो डंबर होते हैं वो रखे एक शीशा भी है यहाँ पे ये और बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं अफकोर्स जिम के --

ये एक बार्बर शॉप की पिक है जहाँ पे जो बारबर है बाल काटटे हुए पे पिक काट क्लिक कर रहा है है और यहाँ पाउडर वाटर बोटल फेयर एंड लवली क्रीम्स वगैरह बहुत सारी रखी हुई है।

हं नीचे पत्थर जो है पत्थर का व्यूव है उसे साइड में एक दो गमले भी--

और जो दीवार है उसके पार करके भी बहुत सारे सुंदर-सुंदर प्लांट है आसपास के अलग-अलग प्लांट लगे हुए हैं ये वाला प्लांट अलग है इससे साइड वाला प्लांट अलग है और इससे दूर वाला प्लांट --

ब्लू और पिंक कलर का स्कूल है यहाँ पे चार बस खड़ी है स्कूल की और बहुत सारी।

क्रीम नेवी ब्लू कलर के और यहाँ का फर्नीचर बहुत अच्छा है यहाँ पे जो डेकोरेशन हो रही है वो भी बहुत अच्छी है।